इस बिल्डिंग के किनारे एक सड़क है इस सड़क पर टाइल्स बिठाया गया हैं यह सड़क काफी सुन्दर --

यह मैदान में काफी पेड़-पौधे हैं यहाँ पर पेड़-पौधे के पत्ते सड़क पर आ गए हैं यहाँ पर बैठने की जगह भी --

काउंटर भी है यहाँ पर ऑटो मोटर्स के तरह-तरह के सामान बिकते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के --

घर है ये घर काफी बड़ा है इस घर में काफी सारे लाइट भी है इस घर में एक बैनर बी भी है इस में पारस पैलेस लिखा हुआ है.